जिनमें एक ऊपर घड़ी लगी हुयी है | इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगा हुआ है | फूल माला रस्सी की मदद से टंगी हई हैं।

ये एक अअ सब स्टेशन टाइप का दिखाई दे रहा है जिसमें की काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है | ट्रांसफॉर्मर में फैन लगे हुए हैं | से फायर की लाइन जाती दिखाई दे रही है जोकि लाल कलर की दिखाई दे रही है।

चर्च के आसपास भी काफी लाइटे लगी हुई हैं | कुछ व्यक्ति झुले पर बैठे हैं जो की झूले के सर्विस टाइप की कर रहे हैं ।

ये एक पुरानी झर-झर ईमारत दिखाई दे रही है जिसमें की एक रेलिंग लगी हुई है | साइड में एक बरगद का पेड़ काफी विशालकाय लगा हुआ है।